और घर बड़ा सुंदर है पूरा तार हैं ।

बहुत दिया है यहाँ पर मस्त लग रहा है एक घर अनाहर हैं पूरा एकदम एकदम पूरा एकदम मस्त लग रहा है सब कुछ ठीके ठाक --